यह फोटो में अअअ सामने जो है एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के सेंटर में--

यह फोटो जो है वो पेट शॉप का फोटो है अ जहाँ पे अ अलग-अलग अ टाइप के जो अम पैरो्‍टस है मतलब पोपट है।

और ग्रे कलर का पोपट दिखाई दे रहा है अ पोपट को खड़े रहने के लिए वहां पे--

और चायपूस अ ऎसा उसका ब्रांडिंग लिखा हुआ है साइड में उसका पीले कलर का एक कप है और उसे बाहर से धोवाने का ट्राई --

और आधा खुला है और सामने जो हैं टेबल और चेयर रखी हैं टेबल चेयर जो हैं।

उसके ऊपर जो है कुछ पक्षी दिख रहै है अ बगुले होंगे जो बगुले जो है वो पानी में तैर रहै हैं।

यह फोटो जो है ब्लुसींगटन अ जो मेकअप एंड ब्यूटी सलोन का है।

और वहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है सोफे के ऊपर एक कवर है वाइट कलर का और वहाँ पर एक फूलदान जो है वो रखी हुई है।

बहुत लंबाई से कार्यालय है उसका जो सामने का पोरशन है और पार्किंग एरिया पोरशन है वो दिखाई दे रहा है।

और सामने टेबल पर काफी बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं और बच्चों ने जो हैं वो अ दु--

नीरज आटोमोटिव ऐसे लिखा हुआ है और उसके साइड में जब नीचे देखोगे तो कुछ झंडी दिखाई दे रहै हैं जोकी पीवीसी पाइप के अंदर लगाए हुए हैं।

मकान में एंट्रेंस के लिए और जो रस्ता है रस्ते के ऊपर गीटिका डली हुई है ताकि रस्ता बना सके --

सामने टेरेस के ऊपर अ दो काली टंकियाँ दिख रही है अ सामने एक कंपाउंड है कंपाउंड का जो कलर है वह यल्लो है उसके पिलर का रेड --

अअअ वहाँ पे बिल्डिंग के गैलरी के अंदर जो है कुछ कपड़े जो है वो लटकाए हुए है।

अम्म एक लाल कलर का और अंबेडकर का फोटो है वहां पे एक रिक्शा भी दिख रही है जिस--

अ गेट जो है वो बहुत पुराना है और उसका कलर जो है धीरे-धीरे करके उतरा हुआ हैं।

और ऊपर आ रहा है और कुछ बंदे जो हैं कंक्रीट को अच्छे तरीके से फैला रहे हैं।

यह फोटो जो है किसी दरगे का फोटो दिखाई दे रहा है दरगाह जो है बहोत बड़ी भी नहीं है बहोत छोटी भी नहीं है मीडियम साइज की उसका --

और सामने इंटरेस्ट के ऊपर बलून का --

और ऊपर से नीचे तक ओ इसी में कुर्ते--

यह फोटो जो है वह क्रीमी सा कलर के बिल्डिंग का फोटो है और यहाँ पे बिल्डिंग हैआप देखोगे तीन चार फ्लोर का बिल्डिंग है।

यह फोटो जो है एमएम फन सिटी के एंट्रेंस का फोटो है यहाँ पर आप देखोगे तो फन सिटी

और यहाँ पे लटकती हुई जो चीजे है वो यहाँ पे दिख रही है अ जिसके अंदर चिप्स कुरकुरे--